वो भी दिखाई दे रहा है और इनके कंटेनर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी दो प्लेट पाव भाजी की लेते हुए दिखाई दे रहा है।

एक ब्लैक कलर की कार भी दिखाई दे रही है।

यह एक कैफे का चित्र दिखाई दे रहा हैं।

यह एक ब्राउन और क्रीम कलर की बिल्डिंग है।

और एक पनीर का पीस भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है सामने--

इस चित्र में बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

कपडे़ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में--

इस चित्र में एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है।

जिसके पास एक आंटी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक सफेद और ब्लू कलर की वॉल दिखाई दे रही--